वहां बहुत कम्पाउंड की दीवार दिखाई दे रही वहां पे पहाड़ दिख रहा है।

यहां पर एक दीवार हैं । जिसके सामने मौसम पड़ी हैं। वहां ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी । दुकान के बाहर हैं। वहां पर एक टेबल ह--

यहां पर एक मैदान दिख रहा है जिसके अंदर पानी का तालाब दिख रहा है और बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है वहां पेड़ भी दिखाई दे रह रहा हैं।